--सी सीसी की सड़क भी बनी हुई है और वहां पर एक धर्मशाला भी बनी हुई दिखाई दे रही है जिस पर नगर पालिका निगम कोरबा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां पर भी हमे एक कुछ कार्यालय बना हुआ दिखाई दे रहा है जहां पर आप्रबंधक कार्यावल लिखा हुआ है ये प्रबंदक जी का कार्यलय बना हुआ है।

और हमे एक सड़क निकली हुई दिखाई दे रही है ये जोकि लंबी चौड़ी सड़क निकली हुई है और वंहा पर एक हाथ ठेला भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है जिसकी जिसमे लाल कलर का प्रिन्ट है और वह पर वेलकम भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

--और हमे एक बिल्डिंग भी बनी हुई दिखाई दे रही है वह पर गड़िया भी रखी हुई दिखाई दे रही है और आसमान भी दिखाई दे रहा है।